इस चित्र में कुल टोटल पांच साड़ियां दिखाई दे रही है।

जंगल जैसा दिखाई दे रहा है दूर-दूर में और पास में एकदम ही रेड जैसा दिखाई दे रहा है।

जिस पर लोग बैठ सकते हैं पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है।